और कुछ ग्रीन कलर के पत्तों के साथ--

और इसके फर्स्ट व्हाइट कलर का--

साइडो में कुछ लोग भी खड़े हुए हैं और--

जो एक प्लेट में रखी हुई है।

पीछे की तरफ दीवार पे काफी सारे वाइरों के साथ मीटर लगा हुआ है।

यह एक घर के बाहर का व्यू है।